साइड में इसमें पेड़ वेड़ लगे हुए हैं।

जिस पे कोई सामान बेच रहा है और सामने एक ट्यूबवेल लगा हुआ है।

यहां से तो ब्रिक्स का कुछ बना हुआ है कुछ गोल सा।

आगे खुला जमीन है इसमें गेट लगा हुआ है स्काई ब्लू का।

और उन बिल्डिंग का कलर व्हाइट और स्काई ब्लू कलर का है।

ये भी डॉक्टर जैसे दवा खाना लग रहा है हिजामा नाम है।

वहां पे रेड कलर का एक टेबल भी है साइड में कुछ बेचें सा लगा हुआ है।

और यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन कलर के दो साइड से।

तो एक सड़क है वहां से एक गाड़ी आ रही है और साइड में एक ऑटो भी चल रहा है।

काउंटर पे एक कंप्यूटर है और वहां दीवार पे एक घड़ी लगी हुई है।

वहां कुर्सी टेबल लगे हुए हैं और टेबल पे एक जग और गलास भी दिख रहा है।

यही तो एक खुले पहाड़ की तस्वीर लग रही है।

जिसकी बहुत सारा होम का सारे पेड़ पौधे चढ़े हुए हैं और एक साइड से कुछ रेत भी दिख रहा है।

और इसपे म रेड कलर का किया हुआ है और येलो कलर भी है और साइड में सीढ़ी एक है।

एक साइड में मिरर है और यह ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है।

वहां पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है बहुत सारे फूल लगे हुए हैं लाइटिंग सिस्टम वगैरा भी हैं।

और बाकी बंदों के सर पे भी समान है जो मिलाया हुआ है।

इसमें ये जो दीवार विवार जाल वाल लगी हुई है।

और अंदर से जो मकान है उसेपे कुछ माले बाले भी लगे हुए हैं।

यह तो मुझे इंजीनियर लग रहा है इसने कुछ कागज हाथ में लिए है और कुछ दिख रहा है।

और वहां सामने दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है और एक एल_इ_डी भी है।

और वहां से भी कुछ मकान जैसा है उसके पीछे भी एक पेड़ है।

और ये तो एक सड़क की तस्वीर है वहां से तो बहोत सारे बंदे आ रहे हैं और कुछ बंदे जा रहे हैं।

और यहां से ऊपर से इसमें छत वत लगाया हुआ है।

इस बंदे ने ब्राउन कलर की शर्ट पहनी हुई है और यहां की तरफ देख रहा है।

और एक बंदा जा रहा है घर के अंदर शाम की टाइम की तस्वीर है।

चर्च के बाहर एक ऑटो दिख रहा है जिसको लाइट जल रही है पीछे से।

ये तो एक स्टेशनरी शॉप है ऑल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बुक स्टेशनरी ऑल टाइप्स ऑफ़ ऑफिस है।